एक इंसान खड़ा हुआ है वहां पे टेंट है और पीछे बहुत अँधेरा दिख रहा है रात का समय --

आ ये एक आ रोड है रोड ब्रिज के नीचे रोड बना हुआ है जहा पे बहुत सारे लोग खड़े हुए है एक ऑटो है यहां पर और एक सफेद कलर की गाड़ी जा रही है।

जो दुकान है उसका कलर लाल कलर का दिख रहा है सफेद कलर से लिखा हुआ है उसमें और एक लाइट का तार जा रहा है अन्दर सफेद कलर की लाइट जल रही है।

'' आर्ट एंड क्राफ्ट वगेरा मैम हैं जो टेबल पर चेक कर रही है बच्चें खड़े हुए हैं मैम ने सफेद कलर की ड्रेस पहनी हुई है एक गमला रखा हुआ है जिसमे प्लांट लगा हुआ है और लोहे की जाली दिख रही है। ''